यहाँ पर एक शोपिंग मॉल जैसा दिखाई दे रहा है।

कुछ रस्सी जैसे बना हुआ है और कुछ बड़ा-बड़ा लकड़ी का खंभा जैसे लगा हुआ है लोहे का भी।

जिसमें कुछ ऊपर पे लिखा है साइड से सीढ़ी बना है वहाँ पे भी कुछ लिखा है छोटे-छोटे गमलों में --